और कुछ फल भी रखे हुए हैं।

और बहुत कुर्सियां भी लगी हुई है।

इस दृश्य में गेरेज नजर आ रहा है।

और लोहा का शीक्कर नजर आ रहा है।

और पेड़ भी दिख रहे हैं।

और व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

कुछ कुर्सियां भी लगी हुई है।

और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

और उसके हाथ में एक किताब है ।

और पीछे बहुत सारी किताबें दिखाई दे रही है ।

और जमीन पर टाइल्स लगा हुआ है।

सीलिंग पर लाइट और पंखे लगे हुए हैं जिनका कलर व्हाइट है।

बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

और एक कार्टून भी नजर आ रहा है।

इस दृश्य में दुकान नजर आ रहा है।

और दुकान का कलर यलो है।

इस दृश्य में पुल नजर आ रहा है।

इस दृश्य में कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

जो की योगा कर रहे हैं।

इस दृश्य में मैदान नजर आ रहा है।